कुछ आलुओं में उठे उठे से रोएं दिखाई दे रहे --

दूसरी साइड कांच के अंदर गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने दीवाल पर एक बैनर लगा है उस पर सचिवालय हिंदी मे और इंग्लिश मे दोनों में लिखा हुआ है।

बैनर के नीचे एक लड़का साइकिल से दिखाई दे रहा है जिसके पीछे बैग है।

बिल्डिंग के दूसरे साइड भी बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक दुकान दिखाई दे रही है।

बैनर पर सन द सारी शॉप लिखा हुआ हैं।

गैस के बगल में कड़ाही रखी हुई है।

सामने ही बहुत सारी कुर्सियां और मेज दिखाई दे रहे हैं।

मेज के ऊपर वाली छत पर जाली लगी हुई है और लाइटें दिखाई दे रही है।

मकान में लाइटें जल रही है।

सामने ही एक इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत की बाहरी दीवाल पर एक बैनर लगा हुआ है।

टेबल के बगल वाले दीवाल पर दो तस्वीरें लगी हैं।

व्हाइट कलर की छत के पीछे बहोत बड़े बड़े और हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

दुकान के सामने बहुत बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है।

खंभे में दोनों तरफ तार गए हुए हैं।

और सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं सीढियों पे उतरने वाले कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

आदमी के बगल में एक वाइट और येलो कलर की बोरी रखी हुई है।

हरे कलर की और रेड कलर की कारपेट बिछी हुई है।

बिल्डिंग के आगे ही बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

पेड़ के बगल में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने ही बोरे में शिमला मिर्च दिखाई दे रही है।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

सामने ही बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग्स के आगे व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

बोहोत अच्छी सी डेकोरेशन की गई है दिख रही है।

सामने ही बहुत सुंदर सा और बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

गाड़ी के बगल में एक दुकान दिखाई दे रही है।